खड़ी है और रोड के आजू बाजू बिल्डिंग है घर है।

और मालूम पड़ा ये कोई रेडिमेड वगैरा कि या बुक्स की--

और बोहोत बड़ा मतलब ये समुन्द्र जेसा है महा नदी या समुन्द्र है।

और उसी पे मतलब रस्सी से बंधी हुई है।

और उस रोड पे मतलब रोड लाइट भी जल रहा है रोड --

बिछा हुआ वो रेड कलर का दिख रहा है सामने हेन्की रखी हुई है चस्मा रखा हुआ है।

ये बहुत खुला बहुत बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड के सामने जस्ट --

और उसका कार का हे जो बाजू में एक खम्बे लगे हुए है।

और जो की गयी है गयी इलेक्ट्रिक तार बिछा रहा है --

कोई ये कोचिंग सेंटर है और सेंटर में मतलब मैप वगैरा का अ दीवाल पर पोस्टर लगा हुआ है उसमें लाइट भी जल रहे हैं।

और उसमे टेक्स मेसे लगे हुए है जो की वहा पे ले अ छात्र छत्र--

कोई भी इस की दुकान है अ जहा पर अ मत्लभ--

यहां पे एक किराने की भी दुकान है बिज की दुकान है साइड में पेड़ है और कुछ कस्टमर आ रहे हैं जा--

साइड में बहोत बड़ी बिल्डिंग है और उसके साइड मे भी बिल्डिंग बड़ी है और उसके सामने दो कार सफेद रंग की खड़ी है।

एक आरहा है एक आह पे आदमी लोग आ रहा है जा रहा है।

इस हॉल में बड़ी लाइट जल रही है।

और कुछ सामान भी रखा हुआ है।

ओए बेन्गल्स भी रखे हुए है जिसमे --

मलुम पड रहा है इस चित्र में एस्सा दिखाई दे रहा है की मतलब --

और एक आदमी एक सफेद कार के पास खड़ा है उसके साइड में--

अ कोई यहाँ गेच हो रहा है मतलब पेट्रोल टाइप का है ये --

हम्म और लाइट्स भी जल रही है बोर्ड भी लगे है।

ग्राउंड है ग्राउंड में एक मत्ल्ल्ब अ अ --

मतलभ बाथरूम में लेट्रिन वोशिंग बेसिन है गीजर लगा हुआ हैं और ए_सी भी रूम में उस बेडरूम में लगा है पंखा भी है खिड़की भी है दरवाजा भी है।

जहा पर लोग अपना पट्रोल डीज़ल भरा रहे है ।

बाइक खड़ी है स्कूटी --

जो की उसका बोनट खुला हुआ है उसके लिए उसमें देर मतलब बात चित कर रहे है।

एक बहोत बड़ा होल है होल में मत्लभ एक पंखा लगा हुआ है में दरवाजा भी है एक लाइट्स भी जल रहा है।

उस हॉल में मतलब जेसे लोग चेकिंग करते है बोम वगेरा किसी के बेग में बोम वोम तो नही रखा गया है।

ये एक शाम वगेरा ये जो केंद्र है मतलब सामुदाईक वो कोई ऑफिस है केंद्र है।

बोहोत सारे यहाँ पे लाइट्स लगे हुए हे खम्बे लगे हुए है।

आर पोस्टर भी लगा हुआ है बोर्ड्स भी लगे हुए है।

जो की इलेक्ट्रिकल तार भी गया हुआ है आजु बाजु बड़ी बड़े पेड़ पौधे भी है।

कुछ लड़के लडकिया अपने अपने तरीके से टहल रहे है कूद रहे है।

अ यहां इस चित्र में ये दिखाया गया है कि कोई अ मतलब अ बहोत बड़ा ये हॉल है।

हा और इस होल में होटल टाइप में वोई एक ओई मालून पड़ा कोई फंक्शन होने वाला है जो की इन्ड़ेकोरेट कुछ नज़र आ रहे है।

हां ये किसी घर के सामने का खुला पोंड बालकनी टाइप में बना हुआ है।

सोफा सा कुछ लगा है।

उसके साइड में भी काफी सारी छोटी बड़ी बिल्डिंग है मंदिर का गुंबद भी दिखाई दे रहा है।

और एक गरज अ अः एक कार तो काफी मतलब रिज मतलब उसकी तक्नीकी खराब हो गयी है कुछ।

अब उसे मुह्ह से दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक रोड मतलब बोहोत बड़ी --

ऑटो रिक्शा जा रहा है उसमे एक आदमी बैठा है पीछे एक सफ़ेद रंग की कार जा रही है उसके आजु बाजु --

और उनके सामने --

पार्किंग जेसे अम्म छोटे बड़े --

यह एक पार्किंग एरिया है जिसमे बच्चे इंजॉय कर रहे है सीडी भी लगी हुई है जुला भी लगा हुआ है।